बादल भी दिखाई दे रहे है बन-वन के फु पौधे भी लगे हुए है जिन जिनमे सुंदर फूल दिखाई दे रहे है और पौधे भी लगे हुए है।

हमें यहाँ पर मैदान दिखाई दे रहा है गो बहुत ही सुंदर मैदान है और पेड़-पौधे भी बहुत सारे दिखाई दे रहे है।